भारत सरकार केंद्रीय राज्य स्वभवन पटना का है ये।

मॉल है। मॉल में बहुत सारा कपड़ा है हैंगर में टंगा हुआ।

जेल है। जेल में गाछ-ऊछ लगा हुआ है। गेट लगा है। ऊपर कपड़ा-उपड़ा सुख रहा है।

एक रूम है रूम में टेबल लगा है बॉक्स बाजा बजने वाला है।

मरदाना है। एस.आर.आई. राजेश्वरी बुक --

उम्म बहुत सारे लोग खेल रहें --

और इन राउंड के पीछे घर है।

और अलग-अलग लोग दिख रहे हैं।

हवा है एक हाथ आगे किया हुआ है।

यहाँ पे खाली जैसा लग रहा है बगल में किनारे में।

टेलीफोन से बात कर रहा है।